यहां एक बड़ा सा मैदान है जहां क्रिकेट खेलने के लिए बनाया हुआ है चौक से वहां पे लाइन बनाई हुई है और तीन डंडे रखे हुए हैं।

यहां एक शॉप है जहां पर सब सामान रखा हुआ है नीचे दुकान के बाहर भी सामान रखा हुआ है एक चेयर है अंदर--

यहाँ एक मैदान हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का शायद काम चालू हैं। वहां पर पत्थरस रखें हुए हैं। बड़े-बड़े दो जे_सी_बी आयी हैं दो गाड़ियाँ हैं।

ये एक मॉल है जहां पे बहोत से लोग आके बैठे हुए हैं कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई खड़ा है और यहां पे एक बड़ी सी स्क्रीन है।

ये एक दुकान है जहां का नाम है एच_एम हनुमान बॉक्स मोतीलाल जहां पे अंदर कपड़े वगैरह दिख रहे हैं।

ये एक सोने की दुकान है जहां पर तीन आदमी और दो औरत खड़े हैं। पीछे उनके बलून्स लगे हुए हैं। पंख लगा हुआ है।

ये एक ब्लू कलर का टेंपो है छोटा सा जिसमें बहोत सारे बाटले रखे हुए हैं उसके बाजू से एक बाइक जा रही है।

यहां दो छोटी छोटी दुकान बनी हुई है जो रोड साइड है पीछे हम लोग के पेड़ पौधे हैं बहोत सारे पहाड़ हैं।

ये एक कप की शॉप है जहां पर बहोत सारे कलरफुल स अ कप रखे हुए हैं कुछ नीचे रखे हुए कुछ ऊपर लटकाए हुए --

ये एक शॉप हैं जिस पर बलूंस लगे हुए हैं बहुत सारे पंखे रखे हुए हैं जो एक आदमी लोग आय है अपनी दाढ़ी मुच्ची कटवाने।

एक दुकान है जहां पर सब सामानस रखे हुए हैं डब्बे रखे हुए हैं एक यहां पे कंप्यूटर है जो चालू है।

यहां एक दुकान है उसके बाहर कोकाकोला का एक फ्रिज रखा हुआ है उसके अंदर बहोत सारे ड्रिंक्स रखे हुए है और बाजू में एक बॉक्स है।

यहां कंस्ट्रक्शन का काम चालु है बहोत से लोग काम कर रहे है एक आदमी खड़ा होके उन्हें गाइड कर रहा है उसके हाथ में पेपर्स है।

ये एक दुकान है जहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स के सामान रखे हुए हैं बैट वगैरह रखे हुई हैं बहुत सारी ट्रॉफीज रखी हुई है।

एक दुकान है कांच की जहां पर बाहर तीन पुतले खड़े हैं ओ पुतले पर कपड़े चढ़ाए हुए हैं ये एक कपड़े की दुकान है।

यहां रोड है जहां पर एक रिक्शा आगे जा रही है पीछे बाइक्स जा रहे हैं आदमी लोग बैठे हैं बाइक में रोड थोड़ा गीला है।

यह बस स्टैंड है जहां पर बहुत सारी बस लगी हुई हैं यहां पर आस पास में बाइक भी लगी हुई है बाइक पर एक आदमी बैठने जा रहा है।

यहां पर बहोत से औरतें आए हुए हैं जो समंदर के बीच में जाकर खुद दर्शन कर रहे हैं।

यहां पर तीन लोग काम कर रहे हैं जो अपने अलग अलग दुकान में बैठे हुए हैं यहां पे कुछ फर्नीचर का काम चालू है एक रिक्शा खड़ी हैं।

यहां पे एक मैदान है जहां पर बाजू में कचरा फेंका हुआ है वहां पे बसें खड़ी हैं बाइक खड़ी हैं गाड़ियां खड़ी हैं।